यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो बहोत ही बड़े बड़े हैं।

ऑरेंज सभी प्रकार की लगी हुई हैं कुछ फोल्ड करके रखी हुई हैं।

ये एक शॉप है आशा सेंट्री एंड बिल्डिंग मटेरियल नाम से इसमें --

केबिन लाइटें फिटिंग का सामान सभी प्रकार के पाइप सभी प्रकार के टोंटियां वगैरा इसमें मिलती हैं।

ये एक शोरूम है जो बाइक स्कूटी के यहां पे इलेक्ट्रॉनिक बाइक --

बैंक मे लोग जा रहे है और अपना खाता खुलवा रहे है कुछ लोग पैदल जा रहे हैं कुछ बाइक स्कूटियो पर जा रहे--

ये लालगढ़ रेलवे स्टेशन है जो बीकानेर में है ये रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा है।

ये एक पहाड़ी इलाका है जो बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है इसमें हरियाली बहोत ही है।

बहोत ज्यादा सुंदर-सुंदर डिजाइन के खिलौने मिल रहे हैं ये खिलौने बहुत ही सुंदर हैं जो बच्चे इन खिलौने से खेलते है।

इस सैलून में ब्यूटी का काम किया जाता है यहां पर लोग लेजर ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी आता है इसमें ए_सी लगी हुई है।